दर पर एक एटीएम है। स्टेट बैंक एटीएम ईश एक एटीम है। एक बाइक खड़ी हुई है टीवीएस ।

जो की नीले कलर के हैं वहां पर आसपास सफेद कलर का कलर भी किया गया है यहां पर आसपास कुछ लाइटिंग भी जलती हुई नजर आ रही है।

यहां पर नीला-नीला आसमान दिखाई दे रहा है। यहां पर आस-पास कुछ परछाइयां भी नजर आ रही हैं।

यहाँ पर सफेद सफेद आसमान भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे --

सफेद-सफेद आसमान भी दिखाई दे रहा है।